लड़का है जिसने वाइट शर्ट पहना है और हाथ में झोला है।

जिनमे अधिकतर येलो कलर के हैं और कुछ सफ़ेद रंग के हैं।

इसपे एक बिग एल_जी लिखा हुआ है।

होलसेल लिखा हुआ है।

ये एक किनारे पे कुछ मार्बल्स पड़े हुए हैं।

यहाँ पे एक ब्रिज़ है।

क्रिकेट बैट का फोटो है।

ये एक बड़ा सा हॉल है।